उल्टा करके रखा गया है एक दीवार दिख रही है बहुत सारे पेड पौधे दिख रहे हैं।

तीन लड़के भी खड़े है जो बैग लिए हुए एक साइकिल खड़ी है।

ब्लैक कलर का बोर्ड बोर्ड बना है पढ़ने वाला --

एक लक्ष्मी जी की मूर्ति भी रखी हुए है पीले कलर के मंदिर में --

एक लाइट्स भी लगाई गई है रेड कलर के फूल में --

बहुत सारे लोग जहां पर बैठकर खाना खा रहे हैं।

ये किसी फील्ड का फोटो है फील्ड में बहुत सारे घास उगी हुई है।

बाहर कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही है जो लाइट पिंक कलर का है एक वाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे --

बहुत सारे बांस के खंभे लगाकर ऊपर से ग्रीन कलर का --

ब्राउन कलर की ईटे दिख रही है रेड कलर की --

गाड़ियां आ रही है जा रही है बहुत सारी ----

एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी दिख रहा है हॉस्पिटल कलर ब्लू एंड वाइट है सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा है।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

सड़क के दोनों साइड किनारे में छोटे-छोटे गमले रखे गए हैं जिनमें पेड़ पौधे लगे हैं।